--और बाहर मे बड़ा बड़ा गाड़ी भी खड़ा है और अंदर मे मस्त है ए_टी_एम मस्त हवा चलता है और यहाँ पैसा भी निकाल निकालना होता है।

एमेर घर हे अऊ एमेर ऑटो दिखत हे और पेड़ पौधा दिखत हे और सामने सामने घर दिखत हे अऊ अहाता घेराए दिखत हे अऊ घर उमा टाइल्स दिखत हे।

--और नीचे मस्त पोडीन रोड दिखत हे मस्त रोड दिखत हे और बड़िया बढ़िया गाड़ी मोटर दिखत हे मस्त चमका--

यह रायपुर ए यहाँ बहुत झने दिखत हे अऊ मस्त ऑटो भी चक्का जाम हे अऊ बस स्टैंड मे खड़ा हे और अगल बगल मे ये आ पेट्रोल टंकी है।

एह ऑटो ए आ-आ और ये मेर घर दिखत हे और बाइक दिखत हे और मस्त टावर दिखत हे और एक ठन यहाँ पे पिकप दिखत हे और पिकप मे मोर संगी हा सब्जी लेहे गेहे।